यहाँ पे गरीब बच्चे फ्री में अपनी शिक्षा कर सकते हैं।

ये एक नेट नजर आ रहा है जिसके अंदर एक --

यहां पे पीछे एक टावर नजर आ रहा है जो इमारत के साथ बना हुआ है सामने ग्राउंड है और यहां पे पेड़ हैं।

यहाँ पर एक गेस्ट हाउस नजर आ रहा है। यहां पे लग रहा है कोई फंक्शन है। ऐंट्री के समय बहोत सुंदर सजा है।

यहाँ पे लोग महिलाए तैयार होने आती है। सजने सवरने आती है और मेक अप करने आती है।

यहां एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है। यह --

पानी का पाइप नजर आ रहा है और बगल में एक काले रंग की कार खड़ी हुई है।